ये एक अअ बुद्धेश्म का मंदिर है।

फ्लोर का कलर जो है वो वुडेन कलर में है एंड वॉल का कलर --

और चकली है रसगुल्ला है लड्डू हैं बर्फी है |

बग्गी रखी हुई हैं एंड आसमान का कलर व्हाइट नजर आ रहा है।

एक नर्सरी है उम्म ब्लैक कलर की पन्नी में फ्लावर्स लगा के लोग बेचते है नर्स --

ये एक रेस्टोरेंट है जिसका जो बोर्ड है वो येल्लो के ऊपर रेड से लिखा हुआ है।

जो झाड़ू लगा रहा है या फिर स्वीपर होगा यहाँ पे एक चबूतरा भी बन --

अ एक जिम हैं जहाँ पे ट्रेंडमिल रखे हुए हैं वॉकर मशीने हैं जिसके ऊपर चलते हैं ब्लैक कलर में --